यहां एक बड़ा सा गेट बना हुआ है गेट पर गणतंत्र द्वार लिखा हुआ--

लड़की डांस कर रही है लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

बहोत सारी पत्तागोभी लगी हुई है।

बरफ से जमी हुई है और यहां व्यक्ति--

रखा हुआ है यहां फुटबॉल बैडमिंटन कैटल और भी बहुत सारी --

लोहे की चीजें पड़ी हुई हैं।

पीछे दीवार के साथ खाने बने हुए है।

सामने पुल के बड़े-बड़े पिलर दिखाई --

काउंटर पर कंप्यूटर और कीपैड लगा हुआ है और भी बहुत सारा--